घड़ी साबुन एक बार इस्तेमाल करे फिर दुबारा विश्वास करे।

ये हम लोगो के साथ एक कैफ़े दिख रहा है हम लोगो के सामने गोल्डन हार्ट बेक बेकरी एंड कैफ़े यहाँ पर दो तीन बाइक खड़ीं है और ये कैफ़े बहुत अच्छा --